ये एक तस्वीर है जिसमें ये गार्डन है।

वहां पर ये बोहोत सारे लोग हैं जो वर्जिश कर रहे हैं।

जिन का रंग सेम है इनका रंग रेड कलर है।

इस तस्वीर में बहुत सारी सीढ़ियां हैं जो तंग बनाई हुई हैं।

जिन्होंने ने साड़ी पहनी है जिनका रंग बहुत ही कलरों के है।

वहां पे इस पे एक बोर्ड भी लगाकर है जिसमें लिखा है--

ये एक तस्वीर है जो एक डेंटिस्ट की लग रही है।

एक वाटर पार्क के ऊपर एक सफेद रंग का छत भी बनाया हुआ है।

इस वाटर पार्क के इर्द गिर्द दीवार बनी हुई है और दीवार के बाहर अ कुछ मकान भी नजर आ रहे --

दुकान के अंदर दो आदमी है एक बैठा हुआ है और एक खड़ा है।